यहाँ पे फेमस फेमस बैंक लिखा हुआ है।

यहाँ पे एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है यहाँ एक लाल रंग की बस है जो खड़ी है यहाँ एक लड़का है जो बैग पकड़ कर बस के विपरीत दिशा जा रहा हैं ।

ये एक बौद्ध मंदिर है जैसे इसका डिजाइन देखने से बौद्ध मंदिर का याद आ रहा है।

आइना लगे हुए है मोबाइल पकड़ा है लड़का --

यहां एक गाड़ी का चाबी दिखाई दे रहा है ये होटल का न्यू दिखाई दे रहा है।

इसमें बोरियों में कुछ चीज को भरा जा रहा है मजदूर लोग काम कर रहे हैं लाइट्स जल रहे हैं।

यहाँ एक एल_ई_डी टीवी लगा हुआ है यहाँ पे दो बहोत पुराने अलमारियाँ है जिसपे ताला लगा है यहाँ पे एक बेड हैं।

फूल लगाए है यहाँ मस्ती-मुंबई लिखा हुआ है यहाँ पे कुश सामान रखे हुए है एक लड़का दुकान का फोटो खींच रहा है जो शीशे में दिखाई दे रहा है

कुछ शो पत्ता लगाए हुए है ये बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग में पुताया हुआ है एक लड़की दिखाई दे रही है।

एक दरवाजा है दरवाजा के ऊपर में क्रूस लगा हुआ है यहाँ सामने में एक छिप में एक महिला काम कर रही है यहाँ एक कच्चे का रोड है पेड़ है।